यह पेट्रोल पंप है जिसमें पेट्रोल डीजल डलवाये जाते हैं बाई अ-- सभी प्रकार के गाड़ी यहाँ पर पेट्रोल डीजल अम्-- डलवाते हैं उ---

नदी के चारो तरफ पहाड़ ही पहाड़ इनमें पानी भी बहोत है इनमें मछली भी बहुत अच्छे दिखते साफ़ पानी रहते है तथा पत्थर--

यहाँ पर लोग दूर-दूर से घूमे आते हैं तो बोटो पे चढ़कर थोड़ा सफर करते हैं उ--

सब कुछ का सुविधा रहता है हॉस्टल भी है यहाँ टीचर भी दुर-दुर से पड़ाने आते है।